आ इस इमेज में हमें एक बोर्ड दिखाई दे रहा है जो ग्रीन कलर का है बहुत सारी कुर्सी दिखाई दे रहीं हैं जो काले कलर की है एक --

पीछे जाली सी दिख रही है जो ग्रीन कलर की है एक डब्बा रखा हुआ है तोते के साइड मे जो ऑरेंज कलर का है।

इस इमेज में हमे दो बच्चियां अ योगा करते हुए दिख रही है और एक लेडिज योगा कभी कर रही है।

एक डिब्बा रखा हुआ है साइड में ग्रीन कलर का जो कचरा बॉक्स है और पीछे हरी-हरी हमे घास दिखाई दे रही है और बड़े-बड़े पेड़े भी दिखाई दे रहे हैं जो ग्रीन कलर के हैं।